स्टेशन है स्टेशन पे यात्री आते ट्रैन रुक--

हमलोग डॉक्टर के पास जाते है डॉक्टर के पास आना भी जरुरी होता है।

पहाड़ी है पहाड़ी पे बहोत सारे आदमी--

वातावरण शुद्ध है अच्छी जगह घूमने के लिए आना चाहिए।

नास्ता पाना स्कूल में ही मिलता है।

ये टेबुल कुर्सी टूटा हुआ--

एक सड़क है सड़क पे चारों तरफ मकान बना हुआ है एक स्कूटी लगा हुआ है आदमी सब --

आते-जाते हैं पेड़ भी है पेड़ से शुद्ध हवा भी मिलती है।

ये हर तरह का क्रीम है क्रीम --

आदमी लोग खरीद के लेके जाते हैं खरीद के अपना घर में रख --

हैं और समय पर इसको यूज़ करते हैं।

ये विवाह भवन हैयहाँ पे शा--

लोहे का लगा हुआ है आदमी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं।

सूर्य भगवन का प्रकाश है वहाँ एक टेबुल भी लगा हुआ है।

लोहा का ही बना हुआ है।

सीढ़ी भी बना हुआ है।